जो की नया बना हुआ है बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट में एक कॉर्नर है कॉर्नर में ग्रिल आ ग्रिल लगे हुए है उसके अंदर में हरे भरे पेड़ है और बिल्डिंग को सफेद और ब्लू कलर से सजाय--

और पेट्रोल पम्प का छत जो है उसमें काफी सारे नीले और सफेद कलर की लाइटिंग लगाई गई है पेट्रोल पम्प के जस्ट बगल में एक दो मंजिला--

चित्र में हमे एक अ विशाल बिल्डिंग नजर आ रही है जो की बहुत खूबसूरत है बिल्डिंग के चारों और अ कंपाउंड वॉल दी गई है जिससे जो की अ-अ डिज़ाइन की गई है उसपे।

और उसे सफेद कलर के रंग से कलर किया गया है कम्पाउन्ड वॉल के बाहर अ पेड़ लगाने के लिए स्पेसिंग छोड़ी है जहा पे कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

इस चित्र में हमे एक टेबल दिखाई दे रहा है और टेबल के अ-अ-ऊपर में एक थाली रखी हुई है।

चित्र में हमे जनरल स्टोर की और की दुक-- सामान दिखाई दे रहा है।